यहां पे एक पार्किंग एरिया है। यहां पे एक लाइन से गाड़ी पार्क की गई है और एक आदमी अ-दिख रहा है जिसके हाथ में झोला है और पीछे बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे है। एक छोटा सा घर दिख रहा है।

एक छोटा सा घर दिख रहा है घर के बाहार एक सीढ़ी लगी हुई है और ऊपर तीन खिड़की नजर आ रहे हैं सब अ घर के बाहर से एक उतरने की जगह बनी हुई है और चारों तरफ बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं | एक बाइक खड़ी हुई नज़र आ रही है ।

सफ़ेद कलर का पेपर लगा हुआ है ऊपर एक घड़ी लगी हुई नजर आ रही है। एक लाइट दिख रहा है। एक पानी का बोतल दिख रहा है। बहुत सारे एक लाइन से पेड़ लगे हुए है छोटे-छोटे पोधे भी लगे हुए है। बाहर गार्डन --

यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्कूल है स्कूल का ये ग्राउंड है। ग्राउंड में काफी बच्चे यहाँ पर है। बहुत सारी बाइक खड़ी हुई नजर आ रही है।

यहाँ पर एक गार्डन है। गार्डन में काफी लोगो की भीड़ है एक डायनासोर्स है डायनासोर्स के ऊपर एक लड़का बैठा हुआ नज़र आ रहा है।

सामने एक दीवाल खड़ी हुई है जो आधी टूटी हुई है। एक आदमी बैग लेकर के जा रहा है एक आदमी के हाथ में बैग है और एक ऑटो खड़ी है और ऑटो के बाहर एक आदमी खड़ा हुआ है।

सफ़ेद कलर का रुमाल दिख रहा है और सफ़ेद कलर का पोस्टर लगा हुआ दिख रहा है सब और इसमें बहुत जगह से वायर यहाँ से वहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं।

और बहुत सारी खिड़की लगी हुई है। खिड़की के ऊपर पंखा लगा हुआ है। एक ऐ.सी. लगी हुई है।

और बहुत सारे बेंचेस यहाँ पर रखे हुए नज़र आ रहे हैं। ऊपर ग्रिल पे बहुत सारी लाइट लगी हुए है। सारी लाइट जलती हुई नजर आ रही है।

फूलो की मंडी है। यहाँ पर बहुत ही प्रकार के फुल रखे हुए हैं। बहुत ही कलरफुल फुल है और कुछ लोग --